meet the gimp के tutorial में आपका स्वागत है यह tutorial उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
पिछले tutorial में मैंने drawing tools के बारे में कुछ दिखाया था और किसी तरह jitter button का प्रयोग करके का तरीका छूट गया था
मैं वह सब करना याद रखता हूँ किन्तु यह editing के दौरान अवश्य किया जाना चाहिए
जब मैं यहाँ कुछ लाइनें paint करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसका कोना smooth होता है और ऐसा लगता है कि यह एक pen से किया गया हो
अब मैं jitter अप्लाई apply करता हूँ और amount को लगभग आधे पर या उसी प्रकार set करता हूँ और आप देखते हैं कि paint brush थोड़ा हिलता है और border उतना अच्छा नहीं होता जितना यह पहले था
amount को बढ़ाते हैं और अब आप यहाँ बिन्दुओं का एक cloud let सकते हैं जो उन लाइनों के चारों ओर फैले रहते हैं जो मैंने खींची हैं
और यही jitter button का रहस्य है
यह दूसरा संशोधन है जो किया जाना है
hansen ने मुझे लिखा कि इरेज़र tool में pen या brush में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है
इसे क्रियान्वित करके देखने के लिए साधारणतया पारदर्शिता में यानी एक alpha channel on करके ऊपरी layer पर कुछ paint करें
चयन किये गए background colour युक्त एक pen या brush उस रंग में paint करेगा किन्तु इरेज़र उस रंग को पारदर्शी करते हुए हटा देगा
ठीक है इसे करके देखते हैं
black मेरा foreground colour है और orange मेरा background colour है और आप देख सकते हैं कि layer का name bold में है जिसका अर्थ है कि alpha channel image में नहीं है
अतः मैं alpha channel पर switch करता हूँ
अतः इरेज़र का चयन करते हैं
यहाँ here foreground और background colour समान है अतः मैं ctrl + click बटन दबाकर orange colour को background colour के रूप में लेता हैं
अतः साधारणतया हम background colour के साथ पेंट कर रहे हैं और अब मैं layer पर right क्लिक करके alpha channel को on करता हूँ और alpha channel add करते हैं और आप देख सकते हैं कि name बिलकुल भी bold नहीं है और अब मैं इरेज़र का चयन करता हूँ
आप देख सकते हैं कि foreground और background colour को इरेज कर दिया गया है
अब मैं आपको पेंट ब्रशों और उन ब्रशों के बारे में और अधिक बताउंगा जिन्हें आप painting करने के लिए select करते हैं
अतः meet the gimp के इस tutorial में ब्रशों के बारे में बात करते हैं
ब्रशों का प्रयोग pencil के साथ बहुत से tools द्वारा किया जाता है और मुझे लगता है कि dodge dodge और burn burn tools के साथ समाप्त होता है
ink ink के सिवाय इन सभी tools में एक brush का उपयोग किया जाता है
अतः अब मैं एक उदाहरण के रूप में पेंट ब्रश का चयन करता हूँ
आप या तो brush dialog पर click करके या tool box में set brush का चयन करके ब्रशों का चयन कर सकते हैं और brush विकल्प पर click करें और आपको ब्रशों का set प्राप्त हो जाएगा
यहाँ चारों ओर छोटे छोटे चिन्ह हैं plus का निशान दिखाता है कि brush उतना छोटा नहीं है जितना यहाँ दिखाई देता है और जब मैं इस पर click करता हूँ तो मुझे बड़ा brush दिखाई देता है
यह लाल त्रिभुज animated brush है
यहाँ इसका प्रयोग करके देखते हैं
यह थोड़ाथोड़ा एक pencil drawing की तरह लगता है और इसे pencil sketch कहा जाता है
नीले वाले parametric ब्रश हैं
वे साधारणतया गणितीय mode हैं जो मैं आपको कुछ समय बाद दिखाउंगा
यहाँ कुछ standard ब्रश हैं
brush में काला भाग foreground in से भरा होता है इस case में इन standard ब्रशों में इसका काला और सफ़ेद भाग नहीं बदलता है इसलिए मैं यहाँ paint कर सकता हूँ
और यदि मैं अपने foreground रंग को बदलकर लाल कर देता हूँ तो मेरी painting में एक छोटी image लाल हो जायेगी और यह सफ़ेद रंग background के रूप में बना रहेगा
यहाँ कुछ अन्य brush भी हैं जैसे यह एक pepper pepper color brush
मैं यहाँ अभी एक pepper pepper रख सकता हूँ और इन peppers peppers की एक line भी खींच सकता हूँ
यह brush बहुत उपयोगी नहीं है किन्तु आप अपने स्वयं के brush बना सकते हैं और यहाँ यह बहुत उपयोगी हो सकता है
यहाँ एक brush है जो एक बहुत अच्छी चीज़ है
यह vine है और आप vine की एक line खींच सकते हैं जो काफी अच्छी दिखती है
आप इसे थोड़ी सजावट के लिए प्रयोग कर सकते हैं
यहाँ आप क्लिप बोर्ड में विचित्र brush को देखते हैं
अतः अब मैं कुछ खींचता हूँ किन्तु उससे पहले मुझे अपने colours के रूप में black और white का प्रयोग करना चाहिए
अतः अब मैं इस painting के चारों ओर एक वर्गाकार क्षेत्र का चयन करता हूँ इसे ctrl + c दबाकर क्लिप बोर्ड में copy करता हूँ
copy करने के लिए मैं edit copy पर जा सकता हूँ या मैं राईट clicked करके copy कर सकता हूँ
अब मैं यहाँ मेरे पेंट ब्रश को चुनता हूँ और मैं clipboard dialog का चयन करता हूँ
आप यहाँ देखते हैं कि यह कार्य नहीं कर रहा है
मैं केवल इस चयन में paint कर सकता हूँ क्योंकि यह क्षेत्र चयनित है और यह क्षेत्र चयनित नहीं है
अतः मैंने shift + ctrl + a द्वारा इसका चयन किया है और अब मैं paint कर सकता हूँ
आप यहाँ देखते हैं मेरा छोटा फूल उग जाता है
आप इन छोटे फूलों की एक line भी खींच सकते हैं जो बहुत अच्छी नहीं होती है क्योंकि background भी copied हो गया है और प्रत्येक फूल एक दूसरे के द्वारा ढक जाता है
यह अच्छा लगेगा यदि आप सिर्फ एक image का थोड़ा भाग copy करते है और फिर उस image में खींचते हैं जहां आप इसे रखना चाहते हैं
आप इसे एक image में crude तरीके से अपने logos लगाने के लिए या एक व्यक्ति के चेहरे का फोटो लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं
जब मैं ब्रश पेज को खोलता हूँ यहाँ मैं ब्रशों को थोड़ा संशोधित कर सकता हूँ
यहाँ पहली चीज़ spacing हैं और अभी तक मेरे पास मेरा चयनित clipboard brush है और जब मैं spacing के साथ 100% पर जाता हूँ मैं सुन्दर फूलों की एक line खींच सकता हूँ
इस dialog में आप सिर्फ पहले बटन पर क्लिक करके एक नई brush भी बना सकते हैं किन्तु यहाँ यह editing विकल्प है
अतः दूसरे विकल्प पर click करें और यहाँ मैं एक नई brush बना सकता हूं
मैं circle square या diamond में से एक shape चुन सकता हूँ
diamond let हैं मैं इसकी radius को बदल सकता हूँ और इसके साथ ही मैं brush में कुछ spikes जोड़ सकता हूँ
आप देख सकते हैं कि मैं अपने brush की hardness hardness को बदल सकता you और इसे softer या harder बना सकता you
मैं aspect ratio aspect ratio को भी बदल सकता हूँ
brush के angle angle को बदलने के द्वारा मैं थोड़ा झुका सकता हूँ और मैं spacing को बदल सकता हूँ
यहाँ भी वही करते हैं इस छोटे star के साथ spacing को 200 और इससे अधिक तक बढ़ाएं
और अब मैंने एक नई brush बना ली है और मैं इसे star कहता हूँ
अब आप brush dialog में अपनी now star brush को देख सकते हैं
और जब आप इसका प्रयोग करते हैं आपको इस प्रकार का star मिलता है
अब मुझे केवल इसे black से भरना है
अपने foreground रंग के रूप में gold का चयन करें
star brush के लिए jitter की उच्च मात्रा का प्रयोग करें और यहाँ star stamp करें
मुझे लगता है कि jitter पर्याप्त है और यह अच्छा नहीं दिखता है
यह एक नई brush बनाने का सबसे तेज तरीका है
मैं पहले विकल्प का चयन करके इस brush को edit कर सकता हूँ और मैं angle angle को थोड़ा बदल सकता हूँ और इसके घुमा सकता हूँ और अब मैं इसे यहाँ प्रयोग कर सकता हूँ
मैंने angle angle को थोड़ा बदल दिया है जिससे यह काफी अच्छे angle से कार्य करता है
आप एक नई brush बनाने के द्वारा अपनी खुद की गणितीय रूप से परिभाषित नई brushes बना सकते हैं
पहला विकल्प सिर्फ किसी चीज़ को clipboard में copy करना है
आखिरी चीज़ जो मैं आपको इस tutorial के माध्यम से बताना चाहता हूँ net से ब्रश प्राप्त करना है और यह gimp ब्रशों के लिए सर्च करके कर सकते हैं और मेरे पास यहाँ iceytina द्वारा deviantart पर आपके लिए एक उदाहरण है
यहाँ उपलब्ध ब्रश दिए गए हैं कि iceytina बन गया है और मैं यहाँ download चुनकर उन्हें download कर सकता हूँ
और मैं उन्हें disk पर सेव करता हूँ
मैंने अपनी disk पर इसे downloaded कर लिया है और मैं उन्हें एक क्षण में install करूँगा
अतः इस पेज पर नजर डालते हैं और आप देख सकते हैं कि इन ब्रशों को creative commons लाइंसेसों में license किया जाता है और मुझे इसके साथ derivative कार्य करने की अनुमति नहीं है अतः मुझे ये ब्रश लेने की अनुमति नहीं है और मैं उन्हें बदल नहीं सकता हूँ और उन्हें पुनः वेबसाईट पर रखते हैं
किन्तु मैं उनका प्रयोग कर सकता हूँ और उनके साथ कार्य कर सकता हूँ और iceytina और वास्तविक link के संबंध के साथ अपनी website पर publish भी कर सकता हूँ
आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ gimp ब्रशों के लिए एक link दिया गया है और deviantart और अन्य वेबसाईटों पर बहुत see ब्रशें मौजूद हैं
यह पिछले 24 घंटों के दौरान एक सबसे नई और popular brush है
मैं एक माह का चयन करता हूँ और आप अब देख सकते हैं कि वहां विभिन्न प्रकार की बहुत see ब्रशें हैं
और इसी प्रकार इसे stardust और twinkles में प्रयोग करते हैं
किन्तु यह काफी आश्चर्यजनक है
knuxs spike brush pack knux 57 के द्वारा
यहाँ कोई license जानकारी नहीं दी गई है अतः मैं इसे download कर सकता हूँ और मैं इस पर कार्य कर सकता हूँ
मैं सिर्फ download पर click करता हूँ
यहाँ आप gimp 24 ब्रशों का खुला folder देख सकते हैं और यहाँ आप star vbr देख सकते हैं
मैं vbr के बारे में नहीं जानती किन्तु gbr gimp की मानक ब्रशें है
यहाँ उस website से प्राप्त iceytina बनायीं गई ब्रशें दी गई हैं
मैं अपने archive tool के साथ इस folder को खोलता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ jpg में water colours और readme जैसे बहुत see अन्य files मौजूद हैं
अतः मैं उन सभी को चुनता हूँ और उन्हें ब्रश directory में शामिल करता हूँ
यहाँ वे हैं
और मैं knux spike brush pack के साथ यह करता हूँ
मैं archive manager के साथ folder खोलता हूँ और आप यहाँ gimp brush files देख सकते हैं
अतः मैं उन सभी को चुनता हूँ और उन्हें अपनी ब्रश directory में शामिल करता हूँ
अब मेरे पास मेरी brush directory में सभी ब्रशें हैं इसलिए मैं अपने archive manager को बंद करता हूँ और मैं यहाँ folder को बंद करता हूँ और gimp पर वापस आते हैं
आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है किन्तु मैं इस reload brushes का चयन कर सकता you और अब आप देखते हैं कि मेरे पास बहुत see ब्रशें हैं और ये ब्रशें iceytina से ली गई हैं और मैं यहाँ उनका प्रयोग करके देख सकता you
ये ब्रशें water colour के समान हैं
अतः मैं यहाँ water colour box से एक colour का चयन करता हूँ और draw करता हूँ
इन ब्रशों को सिर्फ stamping के लिए प्रयोग किया जा सकता है और drawing के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है
इन ब्रशों में बहुत से jitter होते हैं
सर्वप्रथम मैं background को हटाता हूँ
अतः यहाँ ये ब्रशें water colour का भ्रम पैदा करने के लिए अच्छी हैं या आप image के चारों ओर एक frame बनाने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं
अतः अब आप knux ब्रशों को देखते हैं
मैंने उन्हें पहले नहीं देखा है और उनका प्रयोग करके देखते हैं
ये ब्रशें बड़ी हैं यह पुनः stamping के लिए एक चीज़ हैं
और इससे काफी भिन्न होता है जब मैं उनका प्रयोग करके paint करता हूँ तो यह उतना अच्छा नहीं होता लेकिन जब मैं spacing को बढ़ाता हूँ और opacity को कम करता हूँ तो यह अच्छी हो सकती है
यदि आपको किसी चीज़ के चारों ओर एक border की आवश्यकता होती है तो यह काफी अच्छी साबित हो सकती हैं
किन्तु मुझे लगता है कि ये ब्रशें graphical artists के लिए बनी होती हैं और photographers के लिए उपयोगी नहीं है
किन्तु शायद आप उन्हें प्रयोग करने का एक तरीका खोज लेंगे
मुझे लगता है कि मैंने ब्रशों के बारे में बहुत सी चीज़ों को cover किया है और मैं एक animated brush image hose बनाना और दूसरे छोटे संस्करण में इन रंगीन ब्रशों के बनाने को cover करूँगा
अधिक जानकारी के लिए
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद